ये मुक्तापुर का ए ये बिल्डिंग है और उसके ऊपर सोलर लगा हुआ है। लाइट लाइट भी लगा हुआ लाइट लगा हुआ है और यहां पे एक साइकिल है और बोहोत ही अच्छा रोड है।

प्लेग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे मजहब के लोग हैं क्रिकेट खेल रहे हैं वही एक मदरसा दिख रहा है जहां पे सभी मुस्लिम मुस्लिम लोग क्रिकेट खेल रहे है बहुत सारा लोग आदमी लोग --